को कप को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं कप की कलर व्हाइट है यहां पे बड़ा सा टेबल नजर आ रही है जिसके ऊपर चश्मा और टिशू पेपर रखे गए हैं।

यहां पे पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हैं जो वॉल पुटी से की गई है।

छोटा बड़ा पौधा भी लगा हुआ है अंदर में काफी सारी बाइक्स नजर आ रही है।

यहां पे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जो अनेक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे गेट के पास एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसके कपड़े कलर रेड और ग्रे है।

और मिट्टी भी की सड़क नजर आ रही है।

सड़क पक्की की गई है।

काफी सारे च चश्मे नजर आ रहे हैं शैंपू नजर आ रहे हैं यहां पे बर्तन होने वाला सन भी नजर आ रहा है।

यह एक घर का दृश्य बना हुआ है यहां पे चार चेयर लगे हुए हैं जिसका कलर रेड और वाइट है।

यह दीवाल वॉल पुट्टी से की गई है।

दो बाहर में पोस्टर लगी हुई है।

यहां पे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जो अनेक कलर के कपड़े पहने हुए है।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

करकट की कलर ब्लू है पीछे का दीवार ईंट से बनी हुई है यहां पे काफी सारे बोरे मे कुछ सामान रखे हुए--

यहाँ पे काफी सारे कार्स नजर आ रहे हैं जो अनेक कलर हैं। कुछ--

यहां पे लकड़ी के मदद से अलमारी बनाई गी गई इसके अंदर बुक्स रखे हुए हैं।

यह दरवाजा शीशे के बने हुए इसके दीवाल वॉल पुट्टी से की गई है।

ग्राउंड का दृश्य बना हुआ है जहां पे बड़ा सा पोल नजर आ रहा है।